दीवाल पर प्लास्टर किया हुआ है।

अगल बगल मे बहोत स पेड़ भी लगे हुए हैं।

सामने की दीवार सादे रंग की है इसमें से खिड़की भी नज़र आ रहा है।

आस पास में बहोत सारे पेड़ भी हैं सामने एक टेबल है।

सामने ग्राउंड में हरी भरी घासे है।

नीचे जमीन पर टाइल्स लगी हुई है।

बगल की दीवार पर एक पंखा लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल का चित्र है।

एक आदमी भी नजर आ रहा है पीछे कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

इसके पीछे बहोत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

दीवालो का रंग नीले रंग का है दीवालो में ए_सी लगा हुआ है।

सामने की दीवार हरे रंग की है जिसमें बहुत दीवारों पे बहुत चीज लगा हुआ है।

सामने की ओर एल्वेस्टर लगा हुआ है।

बहुत सारी खिड़कियां भी है बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई पड़ रहे हैं।

एक दरवाजा भी है बोरे का रंग सादे रंग का हैं।

यह एक जगेह का चित्र है सामने बहुत सारी कार्टून रखी हुई है सीलिंग का रंग सादे रंग का है ।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

सामने एक ब्लू कलर की पानी की जार भी रखा हुआ है।